कुछ बिल्डिंग दिख रही है वाइट कलर की है और यहां पर पेंट पुता हुआ है वो अ क्रीम कलर का पुता हुआ है। यहाँ पर दो छतरी दिख रही है जो ब्लैक और वाइट कलर की है।

एक ऐसी होटल दिख रही है इस होटल में जिम वैगरह का दिख रहा है यहाँ पर समान रखा हुआ है वो ब्लैक कलर का है ओरेंज कलर का है और यहाँ पर डार्क कलर का भी दिख रहा है और ब्लैक का भी देखने को मिल रहा है।

दुकान दिख रही है जो की बहुत बड़ी दुकान है और साइड मे ब्लैक कलर का कुछ लगा हुआ है उसके नीचे ग्रे कलर का कुछ दिख रहा है और उसके साइड मे कुछ चीज दिख रही है और यहाँ पर रेड कलर का कुछ दिख रहा है।

शिला दिख रही हैं जो की ए बहोत पुरानी है और उसके नीचे नीला कलर दिख रहा है और साइड से पत्थर दिख रहे हैं और यहां पर बहोत पुरानी चीज दिख रही हैं और उसके साइड में कुछ देखने को मिल रहा है।

और कुछ दिख रहा है जो एक यहां पर एक मूर्ति दिख रही है और यहां पर ब्लैक कलर और व्हाइट कलर का कुछ दिख रहा है यहां पर रेड और येलो कलर भी पहना हुआ है और निचे कुछ बिछा हुआ है।

और यहां पर फल-फूल आदि दिख रहे हैं और यहां पर मालाये भी दिख रही है और वाइट कलर के कुछ पत्ते दिख रहे यहां पर ब्लैक कलर कभी कुछ देखने को मिल रहा है और यहां पर येलो और ग्रीन कलर का भी कुछ चीज देखने को मिल रहा है।